यहां पे एक स्कूल दिखाई दे रहा है जो भूरे रंग का है।

एक पास में बहुत बड़ा पेड़ है जिस पर झालर लटक रही है।

इस स्कूल पे बहुत सारी लाइट वाली झालर लगी हुई है यहां एक झंडा लगा हुआ है।

झंडा लाल और सफेद नारंगी रंग का है नीचे फूलों पड़े हुए हैं।

कुछ चम्मच भी रखे दिखाई दे रहे हैं पीछे फ्रिज है इसमें पेप्सी की बोतल लगी हुई है।

ये हरे मिर्च दिखाई दे रहे हैं जो बड़े बड़े हैं।